जैका उंडे फुंडे हमते कुछ बिट्टा दिखेण लग्यां नदी का बिचम एक बड़ु पुल करा जै के नीसाण हमते बड़ा-बड़ा खम्बा दिखेण लग्यां पिछाड़ी फणा वैका ही हमते कुछ डाला भीन दिखेण लग्यां और कुछ डुंगा भी दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हमते टीन की दिवार छ दिखेण लगीं अर एंच एक छत छ दिखेण लगीं यफणा हमते कुछ बड़ी-बड़ी मशीनन दिखेण लगि जून एक लाल गाड़ी हवाम छ ऊठाईं वैका ओर पोर हमते कुछ छोटु छोटु सामान छ दिखेण लग्युं।

ये चित्र मा हमते भोत सारा लोग छन दिखेंन लग्याँ यु देखन सै लेबर छन लगणा यखम एक नौनियाल एक मशीन पर कुछ कन छ लग्युं।